यहां पर बहुत सारी कारें दिखाई दे रही है यहां पर खंभे पे लाइट भी दिखाई दे रही है।

एक पाइप भी लगा हुआ है इसमें दो विंडो भी लगी हुई है।

एक आने जाने का गेट भी लगा हुआ--

यहां बस के आगे एक आदमी है स्कूटी पे।

एक इस रेस्टोरेंट में एक लिफ्ट भी है इस रेस्टोरेंट में एक गेट भी है।

इस रेस्टोरेंट में एक नली पे लाल कलर का रिबंद बंधा हुआ है।

जैसे बिजली फिटिंग के पाइप भी पड़े हुए हैं।

यह एक दुकान है इसमें बैंगन भी दिखाई दे रहे हैं इसमें केले भी दिखाई दे रहे हैं इसमें गोभी भी दिखाई दे रही है।

एक पिले कलर की चीज भी रखी हुई है।

यो एक कॉलेज है। इसमें एक मेज पड़ी हुई है।

इसमें एक कुर्सी भी है इसमे तीन पेड़ लगे हुए है।

इसमें एक टूबलाइट भी लग रही है।

एक बोर्ड भी टंग रहा है इसके अंदर एक बहुत बड़ी कुर्सी पड़ी हुई है।

इन व्यक्तियों ने मास्क भी लगा रखा है इसमें बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

यहां पे लाइटें भी लगी हुई है सोफे भी पड़े हुए हैं।

इसमें बहुत सारे लोहे की बेंच भी पड़ी हुई है।

यहां पर मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर चैनर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं यहां पे दो आदमी भी बैठे हुए हैं।

इसके बराबर में एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगा हुआ एक खंभे पर लाइट भी दिख रही है।

घर में छोटे छोटे खानें भी दिख रहे हैं।

यहां पे एक पुलिस का चैनल भी रखा हुआ है यहां पर झूलने का झूला भी लगा हुआ है।

इसमें एल_ई_डी बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके बराबर में चटकनी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं यहां पर मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे बहुत सारी मशीन रखी है। यहां पे एक ए_सी भी लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे रस्सी पे टंगे हुए कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा है।

यहां पे बहुत सारे लाइट के खंबे लगे हुए हैं यहां पे एक आदमी नदी को देख रहा है।

इसमें माला भी दिखाई दे रहे हैं।

यो एक बॉडीबिल्डर है। इसके दो बाइसेप भी है। इसमें एक मशीन पड़ी हुई है। उसके ऊपर रोड रखा हुई है।